पेड़ के सीधे हांथ पे एक बिजली का खम्बा है जिसपे ट्रांसफर्मर लगा हुआ है ऊपर सफ़ेद आसमान हैऔर खूब सारे पेड़।